मुझे यहां पर बहुत बड़े-बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे है और गाड़ियां भी चल थी हुई दिखाई दे रही है।

यह किसी गवर्नमेंट स्कूल का फोटो है विद्यालय का जहाँ पर बोहोत सारे गमले में फूल लगे हुए हैं।

और यहाँ पर बहुत ही अच्छी-अच्छी स्टेचू बनाई गई हुई है।

और यहाँ पे बोहोत से लोग दर्शन करने के लिए भी आये हैं बोहोत ही भीड़ है।